यहां पर मुझे बहोत सारे लाइट्स दिखाई दे रही है और एक बड़ी सी ए_सी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे लोहे से बना हुआ सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे टीन से बना हुआ छत दिखाई दे रहा है और बहुत सारी ईंटा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका शक्ल ब्लर किया गया है।

मुझे यहां पर गाड़ी के चक्के भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी लाइट्स दिख रही हैं।

मुझे यहां पर ग्रीन कलर के पिलर्स दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक काले रंग के प्लेट के उपर में चिकन लालीपप रखा हुआ दिखायी दे रहा है।

तस्वीर में मुझे कैबेज दिखाई दे रहा है और कैरेट भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे रोड दिखाई दे रहा है और पीछे मुझे कोकोनट के पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कांच के डब्बे के अंदर में समान रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे ब्लू कलर की बड़ी सी चर्च दिखाई दे रही है जहां पर लिखा हुआ है लॉन्कहाव बापटिस्ट चर्च ।

तस्वीर में मुझे ग्रीन कलर की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे वाइट कलर से सनसेट लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां सूखा बैंबू भी दिख रहा है।

नीचे मुझे एक डस्टबिन दिखाई दे रही है और ऊपर मुझे पिंक कलर की बड़ी सी एक टेडीबेयर दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे बच्चो के बहोत सारे खिलौने दिखाई दे रही है जैसे गाड़ी और बॉल ।

पिंक कलर के मुझे यहां पर ओम का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक ढका हुआ गाड़ी दिख रहा है।